कोई प्‍वाइंट दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ है।

कुछ का हरा भी हैं और खुला आसमान भी है।

इस तस्वीर में एक सुंदर सा होटल दिखाई दे रहा है होटल के आगे बहुत सारे फोर व्हीलर्स गाड़ी लगे हुए हैं।